यहाँ सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है दो मंज़िल की और ऊपर एक टावर लगा हुआ है नीचे कुछ शख़्सवन खड़े हुए हैं कुछ साइकिल खड़ी हैं।

बाहर कुछ शक्स खड़ा हुए है। अंदर दुकान में भी एक शक्स बैठ हुआ है। बाहर कंप्युटर रखा हुआ है। ऊपर कागज वगैरह लगे हुए हैं।

और एक बाबा बीच में हैं। उनका साइड दो लकड़ियां लेके कुछ शक्श खड़े हुए है।

बा बिल्डिंग बनी हुई है दो मंजिल की कुछ नेट लगे हुए हैं सामने भी कुछ बिल्डिंग बनी हुई है लाइटिंग लगी हुई है।